ऊपर में नीला आसमान है नीचे सड़क है।

उपर में आसमान है काफी सारे बादले है नीचे मिट्टी है उसके बगल में ईंटे भी रखे हुए हैं।

और नीचे में इंग्लिश से लिखा हुआ है वन मार्ट और दाएं और बाएं में काफी सारी बाइक खड़ी है।

और नीचे एक वॉचमैन बैठा हुआ है।

और आगे एक दरवाजा भी है जो की लोहे का बना हुआ है और एक पिंक कलर का घर भी है।

नीचे घास भी है ऊपर आसमान है।

ऊपर में नीला आसमान हैं और बादल भी हैं।

उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

काफी सारे आदमी भी खड़े हैं।

इस तस्वीर में काफी सारी लाइटे हैं और वाइट कलर की दीवार पेंटेड भी है।

जो मूर्ति बैठी हुई है वो वाइट और रेड कलर कपड़ा पहनी हुई है।

कुछ आदमी खड़े हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं और यहां पर काफी सारी स्कूटी है बाइक है।

जो कि लकड़ी की बनी हुई है और कुर्सिया लोहे की है और कुर्सियों मे ब्लैक कलर की बैठने वाली भी है।